हां में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा एक--

कुछ लाल रंग का दिखाई दे रहा --

आ रहा है जहां ट्वेंटी --

जहां है जो एक वाइट कलर --

एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग --